कुछ हॉरन भी लगे हुए हैं।

सामने की साइड एक स्टील की ग्रिल भी लगी हुई है।

रूम के अंदर कुछ सोफे भी रखे हुए हैं सोफों पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पर कुछ बड़े पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यहां पर कुछ मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में कुछ आधार कार्ड रखे हुए हैं और कुछ पैन कार्ड भी रखे हुए हैं।

बहुत सफेद कागज भी रखे हुए हैं।

इस रूम के अंदर एक पर्दा भी लगा हुआ है।

यह एक टायर पंचर की दुकान है इस दुकान में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

और इधर की साइड में कुछ टायर भी रखे हुए हैं।

काउंटर पर एक बोतल और एक जग रखा हुआ है।

यह एक सुनार की दुकान है इस दुकान में कांच का एक काउंटर भी बना हुआ है।

इसमें एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। यहां पर कुछ और भी कुर्सियां रखी हुई हैं।

बिल्डिंग के सामने कुछ टीन सेट भी पड़ा हुआ है।

बराबर साइड में कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यहां पर कुछ विंडो भी लगी हुई है।

सोरूम के ठीक सामने कुछ आदमी और एक महिला खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

यहां एक मेज रखी हुई हैं।

नीचे की साइड पत्थर के कुछ टुकड़े भी पड़े हुए हैं।